के पीछे एक पेड़ भी है ।

दो-तीन आदमी भी इसके आसपास खड़े हुए हैं लाइट्स भी दिखाई दे रही है ।

ये पिक्चर एक यूनिवर्सिटी की है इसके बाहर दो-तीन बच्चे खड़े हैं ।

शीश शीशे का वर्क हो रहा है इसके अंदर।

और एक लड़की वाइट कट स्लीप की जैकेट पहनकर बात करती हुई आ रही है ।

इस पिक्चर में रेड कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है ।

एक गेट दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का दो-तीन टंकियां दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की--

चप्पल पड़ी हुई है उल्टी है एक सीधी है ।

ब्राउन कलर से इसमें फर्श हो रहा है ।

नदी का पानी बहुत गंदा हो रहा है।

और इसके चारों तरफ पीलर भी दिखाई दे रहे हैं ।

सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है बादल भी दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर के वाइट कलर के --

और उसके बराबर में पेड़ दिखाई दे रहा है ।

चूले के पीछे एक गेट दिखाई दे रहा है ।

कुछ लोग वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं ।

ये किसी यूनिवर्सिटी की इमेज है ।

ये बस दूर से ही मजे ले रहे हैं ।

सभी लैपटॉप के ऊपर स्मॉल स्मॉल शेल्फ बना रखी हैं ।

सबके लिए चेयर्स भी है ताकि आराम से बैठ के काम कर सके।

शायद ये भवन बहुत पहले का है ।

बूंदे भी इसके अंदर दिखाई दे रही हैं गिरती हुई--

बहुत सारे लोग वहां पर प्रेयर करने आए हुए हैं ।

और चर्च का निशान भी बना रखा है प्लस का जो ये सिंबल होता है इनका--

बहुत सारी इसके अंदर वेंटिलेशंस लगा रखे हैं ताकि हवा आती रहे जाती रहे है ।

अ से कोई बाहर ना गिरे विंडो से कोई बाहर ना गिरे इसलिए वहां पर--

साइड में उनकी विंडो है जहां से वो बाहर का नजारा देख सकते हैं।

क्योंकि यहां पर इन्होंने पिक्चर लगा रखी है जिससे मुझे पता चला कि ये बेकरी शॉप --

ये इमेज देखने में बहुत अच्छी लग रही है बहुत अच्छी इसकी लाइटनिंग को रखी है ।

और बराबर में रिवर जा रही है अभी फिलहाल के लिए डैम को बंद कर रखा है ।

इंजॉय ले रहे हैं व्यू का--

अब हमें ये नहीं पता कि ये जो टावर है ये किसी कंपनी का है ।

जैसे कि बाहर पेड़ है बहुत बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है।

बहुत अच्छा ये मॉल है अंदर से हमने देखा है हम गए हुए हैं इस मॉल के अंदर--

ये इमेज छत का है इसमें लेंडर डाला जाएगा--